यहाँ और कुछ लोग खड़े हुए हैं । यहाँ पर बहुत सारे छत्री टाइप के भी कुर्सी और टेबल लगाये गए --

और हल्का ग्रे रंग में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक नाव दिखाई दे रही है। नाव का रंग पीला सफ़ेद हरा है।

यहाँ पर कुछ बगल में पेड़ दिखाई दे रहे हैं। सामने की तरफ ज़मीन है जो की पीली-पीली दिखाई दे रही है सुनहरे रंग की।

यहाँ का रंग कुछ गेरुवा कुछ ग्रे कलर कुछ हरे रंग में दिखाई दे रहा है।

मुझे सामने की तरफ यहाँ पर एक रोड दिखाई दे रहा है। अगल-बगल में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं । बहुत सारे --